यहां के दीवारों पर लाल रंग की ईट की तरह डिजाइन दिया हुआ है।

यहां के पुड़े जगह को पेड़ पौधे ने पुड़ा घेर लिया है।

इस लाइब्रेरी के बाहर एक मोटरसाइकिल भी है।

यहां पर मोटरसाइकिल का दुकान का चित्र दिया गया है।

यहां पर एयरपोर्ट का तस्वीर दिया गया है।

एयरपोर्ट के नीचे व्हाइट मार्बल टाइल्स लगाया गया है।

यहां पर एक बड़ा घर है।

इस सैलून के बाहर ही तीन सीरीयां भी दिया गया है।

इस किले के आगे एक गेट भी दिया गया है।

यहां पर एक लाल रंग की गाड़ी भी है।

यहां पर बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं।

यहाँ के एक पोस्टर में के_आर_डी कॉलेज का नाम लिखा गया है और ये कॉलेज उन्नीस सौ तिरानवे में स्थापित है ऐसे लिखा गया है।

कमरे मे एक बिस्तर है।

नदी के थोड़े आगे ही एक बड़ा पहाड़ भी है।

यहां पर एक ग्रिल से निर्मित घर भी है।

यहां पड़ एक सफेद गाड़ी है।

इस कमरे में एक टेबल भी है जिसका भी रंग सफेद है।

यहां पर बहुत ही बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ साइन बोर्ड मे दिये गए अनुसार कृष्ण रामदास शिक्षण महाविद्यालय का तस्वीर दिया गया है।

यहाँ पर एक सिल्वर कलर का पोल भी है।

कुछ बच्चो ने स्वेटर का भी परिधान किया हुआ है।

यहां पर बहुत सारे लोग भी है।

यहाँ पर तीन लोग कर्म करते हुए दिखाई दे रहे है।

इस कमरे का रंग सफेद है।